आपका है और आस पास में पेड़ पौधे हैं।

लिया हुआ जिसके अंदर से ऑरेंज्स कलर निकल रहा है नीचे कुछ लोग बैठे हैं देख रहे हैं।

ये एक सड़क है सड़क पे बस खड़ी है येलो कलर की--

ये मुझे एक पिक्चर का हॉल दिख रहा है जिसमें बहोत सारे सोफे सोफे रखे हुए--

सामने दुकान के रखे है इसमें रैक लगे हुए रैक में बहोत सारे बॉक्स रखे--

दूर तक पत्थर दिख रहे है और दूर से पानी गिर रहा है और वो गिरता हुआ पत्थरों से नीचे आ रहा है।

और उनको अच्छे से सजाया गया है माला पहनाया गया है और बहुत सारे लोग उनके आगे खड़े हैं।

और ब्लू कलर की विंडो है उसके बाहर साइकिल खड़ी है की स्कूटी खड़ी हुई है।